देन कोन्स नेचर आइसक्रीम लिखा हुआ है सिंस टू थाउजेंड सिक्स --

इस इमेज में हमें जो है एक जिम दिख रहा है जिम में बहोत सारे वर्कआउट की मशीने रखी हुई देख रही हैं।